गेम खेलने के लिए बिल्कुल ही रेडी है।

स्टेशन पर बैठे हुए व्यक्ति लोग हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि शायद दूसरे ट्रेन का इंतजार कर रहे--

इस फोटो में हमें एक इंजीनियर साहब खड़े दिख रहे हैं अपने हाथों में कागज लेकर।

बास की बड़ी सी सीढ़ी भी दिख रही है।

हॉस्पिटल की फोटो हमें दिखाई दे रही है।

इसको बहोत सारे लोग बहोत शौक से खाते है।

चेयर भी हमें दिखाई दे रही है एक रेड कलर की है।

सरक के अगल बगल हमें घास जंगल पेर पौधे दिख रहे हैं।

लगाकर नेकबैण्ड लगाकर बच्ची भी ये इक यहां पर खड़ी हुई है।

बड़ा बड़ा पत्थर पेड़ पौधा हडयाली नजड आ रहा है एक--

कोई दूसरी रंगोली बना रहा है अगल बगल पौधे भी छोटे छोटे गमलों में--

और यहां कुछ पुरुष खड़े भी हैं कुछ लोग गेट के अंदर से बाहर से अंदर झांक भी रहे--